यहाँ तालाब और पेड़-पौधे वृक्ष और रोड भी --

घर दिखाई पेड़ पौधे है।

बड़े-बड़े मैदान फील्ड आसमान दिखाई दे रहे है और --

जा रहे है |